जिसमें एक टब के अंदर आलू रखे हुए हैं।

जिसपे दूर-दूर तक हरी-हरी फसल लगी हुई है।

दूर से पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं।

एक आंटी मोबाइल पे बात कर रही हैं कुछ मछलियाँ रखी उनके सामने।

इसमें स्टेज पे एक लड़की डांस करती हुई दिख रही है।

के ऊपर लाइट लगी हुई है ग्रीन कलर की।

जिसके सर थोड़ा सा गंजा हो रहा है आगे की तरफ में पीली चेयर रखी है सामने--

मशीन को समझाते हुए कुछ लोगों को समझा रहा है जिसमें कुछ बच्चों ने कैप पहन रखी है एक--

ऑरेंज और पीले रंग की मुझे बॉल्स नजर आ रही हैं मुझे--

इसमें मुझे पोस्ट ऑफिस की होर्डिंग नज़र आ रही है साइड में वाइट कलर की दीवार है।

ये एक पार्क है इस पार्क के अंदर बच्चे खेल रहे हैं।

साथ में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिसमें मुझे आकाश नजर आ रहा है कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे है शेड के नीचे--

लाल शर्ट में भी एक बच्चा दिख रहा है बच्चियाँ खड़ी हुई हैं पीछे एक आदमी खड़ा है झूलों के पास में।

सिंथेटिक नजर आ रही है लाल रंग की साड़ी है गोल्डन बॉर्डर के साथ में पिंक साड़ी है।

जिसमें आपके वाइट और ब्लू कलर के बलूंस का गेट बना हुआ है।

कुछ बाहर आ रहे हैं लोग मुझे--

जिसमें पीली कलर की लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा है आगे की तरफ फूल लगे हुए हैं रेड कारपेट दिख रहा है।

रेड कलर की ऑय्ल रखी है पीछे की तरफ की दीवाल का रंग नीला है।

ऑरेंज टेबल्स आ रही हैं मेन्यू --

आकाश दिख रहा है साइड से पेड़ दिख रहा है।

आदमी कैमरे से फोटो खींच रहा है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

ये एक घर के बाहर की फोटो लग रही है जिसमें--

एक विद्यालय की तस्वीर दिख रही है।

पीछे की तरफ में पेड़ लगे हैं हरे रंग के।